वॉल है वो वॉल का कलर रेड कलर में है इधर पेंटिंग के नीचे एक झांह है और इधर फोटो फ्रेम है।

चित्र में बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है।

के गाड़ी के येलो कलर पेंट से बॉक्स टाइप में को है।

इसमें थोड़े खड़े हैं और बैठे हैं।

और मंदिर के सामने एक झाड़ है और ये रागी झाड़ है।

ये चित्र में एक मार्केट है वो मार्केट में तरकारी बिकाते हैं।

चित्र में एक हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल अ खाटस हैं उसके ऊपर बेडशीट डले हैं।

वो सबको कलर कलर पेंट मारे हैं इधर एक सुको लकड़ी झाड़ की लकड़ी नीचे गिर को है।

गाड़ी का कलर ब्लू और व्हाइट में है इधर एक लड़का बैठ को है।

मार्केट है ए मार्केट में थोड़ा आइटम्स रखे हैं शैंपू और लिक्वि लिक्विड आइटम्स रखे हैं।

फोटो में सारे लोग को अवॉर्ड्स देते हैं।

और फ्रूट्स देखते हैं इधर लाइट्स रखे हैं इधर कुमार फ्रूट्स इंग्लिश अक्षर से लिखो है।

इस चित्र में एक चकले का बेंच है।

और इधर एक झाड़ है वो स्काई ब्लू कलर का है।

एक फूल का झाड़ है इधर हरियाली घास है।

इ चित्र में कार मैकेनिक शॉप है।

पैंट्स है स्पीकर्स है और थोड़े बेंचस हैं और बेंचेस के कलर ब्लू एंड रेड में है।

एक दो बच्चा है एक बच्चा एक छोटे बच्चे को उठा ले को है एक स्टील बकेट है और पीछे डोर बनकर को है।

वह हरण घास खाते हैं वह हरण का लकड़ा रख कर जाल डाले हैं।